मिट्टी के ऊपर लगे हुए है उसके आसपास भी बहुत सारे--

बहुत बड़ी बड़ी बिल्डींगे है और अलग अलग कलर की बिल्डींगे दिखाई दे रही है और अ --

यह एक नहर है पानी के झरने जैसे दिखाई दे रही है और उसके आसपास में बहुत सारी घासें लगी हुई है और उसके बाजु में भी --

रिपेरिंग अस स्पेसिऍलिस्ट करके भी बोट पर लिखा गया है और बहुत सारियाँ गाड़ियाँ रखे हुए है यहाँ पर।